बाइक खड़ी हुई है। दुकान है दुकान के आगे गाड़ी है रोड है।

यहां पे ए_सी भी लगी हुई है। यहां पे--

टायर रखे हुए हैं यहां मतलब या रिपेयरिंग का भी काम होता है और यहां पे बड़े बड़े लोग बैठते हैं यहां ए_सी लगी हुई हैं।

यहां चेयर भी है यहां ट्रैक टायर भी रखे हुए है।

यह एक तहसील है यहां तहसील कार्यालय रोहतक लिखा हुआ है गाड़ी एक गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पे आदमी खड़े हुए हैं पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

बैठने के लिए भी अच्छे अच्छे बेंच लगे हुए हैं।

यहां दो चेयर बिछी हुई है एक लैपटॉप है।

यहां स्कूल के टीचर्स वो हैं उनको बुलाया गया है बच्चे की पार्टी है।

यहां गुब्बारों सब जगह गुब्बारे गुब्बारे लगे हुए हैं चेयर पे बहुत से इंसान पर्सन बैठे हुए हैं।

ये उधर का हाइवे है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग--

टैंकर भी लगे हुए है गाड़ी भी दिख रही है।

ये है भा कर अर्जुन--

जो एक चूड़ी मे रखी हुई है।